बगल में गड्ढे भी हैं और उस पार बाउंड्री घिरी हुई है बाउंड्री के उस पार कुछ घर नजर आ रहे हैं।

और उसके बगल ठंडे पानी का भी व्यवस्था किया गया है जोकि करने के बाद उसमे--

उसके बगल में एक दुकान है जिसमें एक लड़का लाल गमछा पहनकर खड़ा हुआ है।

एक लड़का खड़ा हुआ है उसके आगे पानी की बोतल रखी है।

यह एक बच्चों के खेलने का गार्डन है जिसपर झूला लगा हुआ है उसपर तीन बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बच्चा पीले कलर के कपड़ा और दो बच्चें सफेद कलर के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे।

जहां चार पांच पौधे लगाए गए हैं और सफेद कलर से बाउंड्री घेरी गई है।

वेटिंग रूम में एक आदमी चद्दर डाल के सोते हुए नजर आ रहा है चद्दर गुलाबी कलर का है।

कंपनी के ऊपर का एरिया नीले कलर का और अंदर बहुत सारे गोल्डन कलर की लाइटें जल रही हैं बाकी का नीचे का एरिया सफेद कलर का दिखाई पड़ रहा है ऊपर आसमान भी है।

बगल में गुटका पानी का दुकान भी है जहां एक औरत बैठी हुई है।

व्यक्ति बाहर आ रहा है पैसे निकाल कर और एक व्यक्ति मशीन पे खड़ा हुआ है जो पैसे निकाल रहा है।

ए_टी_एम नीले कलर का है अंदर सफेद कलर का भी दीवार है अंदर कैमरे लगे हुएं हैं।

पीछे सफेद कलर की गाड़ियां और काले कलर की गाड़ियां खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में पौधे लगाने वाले गमले नजर आ रहे हैं जो काफी सारे हैं।

टीचर खड़े होकर प्रयोगिता करवा रहे हैं बगल में सारे लड़के बैठकर अपना ड्राइंग बना रहे हैं।

नीचे हरे कलर के टेंट बिछाए हुए हैं बगल में कुर्सियां मेज रखे हुए हैं और पर्दे ल--

गेट में बोर्ड है बोर्ड में लिखा हुआ है प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं है।